इस पिक्चर में हमें एक आंटी डांस करते हुए दिख रही है जो की अलग तरह के कपड़े पहनी हुई है और यहां पर बहोत सारे लोग--

और यहां पे उनकी पिक्चर और वीडियोज भी बनाई जा रही है इस आंटी को डांस करते हुए देखके सबका दिल बहल रहा है।

लग रहा है किसी माॅल के आस पास का एरिया ये है जहां पे और बिल्डिंग बन रही है जहां पे इंटे--

यहां पर लोग रेलवे का वेट कर रहे हैं और अपनी और रेलवे की फोटो घिचवा रहे--